जो कि बहोत सारे बैलून से सजा हुआ है।

और जमीन जो है थोड़ी पथरीली टाइप की है।

आगे की तरफ एक स्क्रीन है जहां पे एक मॉनिटर लगा हुआ है।

है और हाफ शल्ट और सर पे व्हाइट कलर का रुमाल से अपना सर बांधा हुआ है।

इस तस्वीर में एक शेर दिख रहा है।